यहां पे आदमी कम कर रहे हैं यहां पे जे_सी_बी खड़ी हुई है।

यहां पे टेंट लगा हुआ है यहां पे डी_जे लगा हुआ--

यहां पे कुछ पोस्टर भी लगे हुए हैं और नीचे --

काम कर रहे हैं और यहां पे शीशे लगा है यहां पे छोटे छोटे प्लांट भी लगाए गए हैं और यहां पे कुछ लाइटें भी लगाई गई है।

यहां पे बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं।